इस फोटो में कुछ कपड़े लगे हुए हैं।

इस फोटो में कुछ पुतले भी खड़े है।

फोटो में भी लगा हुआ है।

एक फोटो में एक लड़का अपने स्कूल जा रहा--